अपने मम्मी पापा के साथ मेंसाथ में आकर और अपनी खुशियाँ मानते हैं। पटाखे छुटाते हैं और फुलझड़ी वगैरह छुटाते हैं।

यह पेट्रोल पंप है। यहाँ पर सभी वाहन जैसे बाइक अ- बाइक अ क-क टेंपो वगैरह आ करके यहाँ पर अपने पेट्रोल डीजल आवश्यकता अनुसार यहाँ पर भरवाते हैं अपने साधन में।

सभी बसों की तरह यह भी एक बस है इसमें सभी यात्री यात्रा करते हैं दूर-दूर तक जाते हैं और सभी सावधानीपूर्वक चढ़ते हैं और बुढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों को बहुत ही ध्यानपूर्वक चढ़ना चाहिए ।